इसके पास में एक पिक अप भी खड़ी की गई है।

जिसके साइड में एक पिलर लगा हुआ है |

जिनको खरीदेंगे साफ़ उ किया जाता रहता है |

यहां पे एक व्यक्ति आया हुआ है।

यहाँ ऊपर की ओर लकड़ियों से बनी हुए टेंट लगाई गई।

जिसके आस-पास में बहुत ही हरे-भरे पेड़ बने हुये हैं।

ऊपर की और अलग अलग प्रकार के कपड़े को लटका कर डिज़ाइन बनाया गया है।

नीचे की ओर हरे कार्पेट बिछाई गई है।

गारमेंट्स बाहर की ओर रखे हुए हैं।

के पास में एक एस.बी.आई. का ए.टी.एम. लगा हुआ है।

जहाँ पे बहोत सारे अलग-अलग प्रकार के कुरकुरे --

की में एक एल.ई.डी. टी.वी. रखी हुई है।

यहाँ दीवारों में उम्म बहुत ही अलग अलग प्रकार की फोटो लगी गयी है |

यहां पर एक व्यक्ति पहाड़ों में घूमने आया हुआ है।